इस फोटो के अंदर एक वो दीवार नजर आ रही है।

मैदान के अंदर बहुत सारे लड़के खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी भी कुर्सियां भी नजर आ रही है।

इस लाइब्रेरी के अंदर कि घड़ी भी नजर आ रही है जो की दीवार पर लगी हुई है इस लाइब्रेरी के ऊपर की छत की तरफ बहुत सारे पंखे लगाए गए हैं जो की सफेद और भूरे रंग के हैं।

और यहाँ पर ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइटे भी लगाई गई है और कुछ झूमर लगाए गए हैं जोकि लाइटों की तरह नजर आ रहे हैं जो देखना बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं।

और यहां पर रंग बिरंगे कलर के कलर के कलर भी रखे गए हैं जो देखने में बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं यहां पर रैक भी नजर आ रही है।

यहां ऐसा नजर आ रहा है कि ये सभी योगा करने की कोशिश कर रहे--

इस फोटो के अंदर एक लकड़ी का बना हुआ सोफा सा नजर आ रहा जिसपर हैंडमेट काम किया गया है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इस फोटो के अंदर एक पार्क का एरिया नजर आ रहा है पार्क के एरिये अंदर बीच के अंदर बहुत सारी घास लगी हुई है जो की बहुत ही हरी-भरी लग रही है।

इस सब्जी मंडी के बाहर की तरफ बहुत सारी बोरियां नजर आ रही है ओ चार रंग बिरंगी बास्केट भी नजर आ रही है जो कि पीले हरी नीले रंग की नजर आ रही है।

और यहां पर ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं वर्कआउट के अंदर नीचे रबड़ की मैट बिछाई गई है जिससे की वेट नीचे पडने पर फर्श न टूटे।